और सीढ़ियों पे दो लड़के दिखाई दे रहे है और एक लड़के ने पीले रंग का टीशर्ट पेहना हुआ है।

इस तस्वीर में एक मैहजिद की तस्वीर है।